यहां पर बहुत सारे लोग इधर-उधर चल रहे हैं यहां पर बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनाई गई हैं।

सारे बड़े-बड़े से पेड़ भी लगे हुए हैं।

बड़े बड़े से पेड़ भी दिख रहे है।

बट यह भी नजर आ रही है।

पर मुझे एक बहुत बड़ी शॉप भी देख रही है।

और बहुत सारे डंबल भी यहां पर रखे--

और मुझे गेट भी दिख रहा है जहां पर बहोत सारे पोस्टर्स भी लगे हुए हैं।

और मुझे एक बहुत सारे वॉल में दिख रहे हैं।

ऊपर मुझे बहुत बड़े बड़े पोस्टर भी दिख रहे हैं और यहां पर बहुत सारे आदमी भी इधर उधर जा --

मुझे यहां पर नज़र आ रहे हैं बहोत सारे लोग यहां पर ढोलक बजा रहे हैं।

पर पोस्टर्स भी लगे हुए दिख--

पर मुझे बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं।

और मुझे भी एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है जो कि माइक पर कुछ बोल रहा है यहां पर मुझे बहुत सारी खिड़कियाँ दिख रही--